चित्र वाशिंग मशीन का है वहाँ पे दीवार पे ड्राई क्लीनर लिखा है वहाँ पे--

ये चित्र बिल्डिंग्स का है बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे है सूरज आसमान भी दिखाई दे रहा है।